क्लासरूम है जिसके अंदर एक बड़ी टेबल तथा आसपास बोहत सारी छोटी-छोटी चेयर राखी हुई है दीवार के कोने मे एक अलमारी राखी हुई है तथा एक ब्लॅकबोर्ड लगाया गया है।

तथा आसपास पौधे लगे हुई है ग्राउंड मे घास उगी हुई है तथा चौक के पीछे के साइड मे पड़े-पौधे लगे है अगल-बगल को सारे घर है।

थोड़ी दूर पर पानी का एक स्त्रोत है जहा से इसके किनारे पर बहुत सारे जानवर ऊपर की और जा रहे है आस पास मे पेड़ पौध लगे--

तथा ईसपर व्हाइट कलर तथा इसे डिज़ाइन करने के लिए ऑरेंज कलर पेंट किया गया है सामने की और बहुत सारे घर व पेड़ पौधे है।

ग्राउंड के आस पास दीवार से बाउंड्री बनाई गई है व अगले साइड मे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए और सन सेट हो रहा है।

वह घास उगी हुई है सनसेट हो रहा है व थोड़ी दूरी पर बिजली के खंबे व घर है ।

टायर रखे हुए हैं व सामने की और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपर सी_ई_ए_टी --